जो की कई कलर का है। उजला काला लाल पीला आपको सभी रंग का बकरियां देखने को मिल रहा होगा।

अभी भी ये मंदिर देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और अभी भी यहाँ पर बहोत सारे श्रद्धालु लोग आते हैं घूमते हैं भगवान को --

बोर्ड लगा हुआ है कुछ इस बोर्ड पे लिखा हुआ है जो की आपको जानना --

और बहुत ही दूर-दूर से लोग इसमें --